सौदे का सामान भरा हुआ है। ]

यहाँ पर झटिमाई की पूजन होकर सब लोग नदी मे नहा रहे है कमर कमर नदी मे पानी है और पंडित जी भी है यहाँ भीड़ लगी है।

यहाँ पर एक पूल दिख रहा है चार लोग मास्क कर खड़े है पेड़ है नदी है नदी के ऊपर पूल है और पूल के नीचे जमीन भी दिखाई दे रही हैं।